जहां पर सायकल की बहोत सी वैराइटीज मिलती है।

दो चम्मच दिए हैं और पनीर--

यहां हम देख पा रहे हैं कि एक अलमारी में कपड़े तैह कर कर के रखे हुए हैं।

कुछ लोग यहां नहा भी रहे हैं।

यहां हम देख पा रहे हैं कि एक ज्वेलरी की शॉप है।

कि ये एक बहोत ही बड़ा लाइब्रेरी है।

शाम ढलने को आई है और--

और साथ ही इंटीरियर का काम बहोत प्यारा लग रहा--

यहां हम देख पा रहे हैं कि--

जो कि शायद बहुत खुश है।

सामने देख पा रहे हैं कि एक गुरुद्वारा है।

के काली सिल्वर और सफेद रंग का कार रखा हुआ है जो बहोत सुंदर दिखाई पड़ रहा है।

रहे है कि ये एक कार का शोरूम हैं जहां पर बहोत से लोग आए हुए हैं।

बड़ी किताबें है तो कुछ छोटी किताबें है।

लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है और मैट भी बिछाया हुआ है।

यहां पर हम देख पा रहे हैं।

तथा नीचे रेतीली जमीन दिखाई पड़ रही है।

साथ ही बाहर बहोत से पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और बहोत भीड़ भी दिखाई पड़ रही है।

जिसपर दो चेयर रखे गए हैं।